यह एक मंदिर है मंदिर के आस पास दुकाने बनी हुई है।

आसपास पक्षी दाना चुग रहे हैं दूर दूर तक हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

इसमें कुछ अलग अलग सर्विस दी हुई है।

दूर तक तालाब बने हुए हैं।

उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है।

जिम के अंदर अलग अलग मशीने लगी हैं।

यह एक छात्रावास है छात्रावास के बाहर एक बाइक खड़ी है।

पास में एक शॉप बनी हुई है।

यहां एक मेडिकल स्टोर है ऊपर लोगो लगा हुआ है।

सोफे लगे हैं दीवारों पे कुछ गिफ्ट आइटम लगे हैं सजाने के लिए लाइटें लगी हुई हैं।